यहां पे पानी टंकी हैं दो पानी टंकी हैं एक नीचे भी टंकी है नीचे टाइल्स लगे हुए हैं और बगल में कुछ --

यह एक क्रिकेट का मैदान है जहां पे बांस पे टंगा हुआ एक लाल कपड़ा है बगल में एक--

चलिए भाई साहब एक चश्मा एक टोपी एंड ब्लू कलर के टी शर्ट ब्लू कलर के पैंट --

पत्थर है जो दो पत्थर है ये नीचे भी दो तीन पत्थर है छोटे छोटे--

यहां पे केहा ढाबा नाम करके एक दुकान है जिसमें--

ब्रेकफास्ट लंच डिनर दिन ही प--

काफी सारे गमले हैं जो गमले ऊपर टांगे गए हैं उस गमले में काफी सारे फूल है नीचे भी है गमले का डिजाइन में रखा हुआ से बनाया हुआ है।

ट्रैफिक पुलिस भी है बगल में रेड कलर की कार छोटी सी है।

एक बाइक भी है जो ब्लैक कलर की है यह एल साइकिल भी है साइड में और--

यहां पे काफी सारे मात्रा में गधा है जैसे कि व्हाइट कलर का घोड़ा।

रखा गया है तराजू बगल में एक काउंटर जिसके ऊपर काफी सारे बुक्स एंड मोबाइल्स रखे हैं पीछे एक कुर्सी है उसके पीछे--

नीचे भी एक बिल्डिंग है बगल में भी दो तीन बिल्डिंग है जिसके रेड कलर ग्रीन कलर येलो कलर व्हाइट कलर एंड --

टकले से आदमी हैं जो वहां के दुकनदार हो सकते हैं बगल में--

वहां पे चप्पलों का दुकान है जहां पे भाई साहब चप्पल बेच रहे हैं वहां पे उन्होंने--

ये एक मार्केट का इलाका है इसमें मार्केट का समय है।

नीचे टाइलसूल्स लगा है जो काफी अच्छा है।

कुल्फी के ऊपर लाल कुल्फी लगा है वहां पे दो तीन व्यक्ति हैं जो काफी--